ये एक ग्राउंड दिख रहा है ये ग्राउंड काफी सुंदर लग रहा है ये ग्राउंड काफी फैला हुआ नजर आ रहा है ये ग्राउंड के चारों तरफ कुछ लोग भी बैठे हुए दिख रहे है यहाँ पर नजारा है इसके काफी बड़ी ईंट के बने हुए है।